एक गांव उस गांव में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई है।

पीले कलर की है इस बस पर लिखा है--

एक हाईवे के पास होटल दिखाई दे रही है।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

ठेला नजर आ रहा है उस ठेले पर लिखा है जगत--

खड़ी हुई है। उस कच्ची सड़क पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

उस कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर तगाड़ियाँ और भालू रेती दिखाई दे रही है।

उस कंस्ट्रक्शन साइट पर तीन वर्कर काम कर रहे हैं।

उस गेट तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है।

एक ऑफिस नजर आ रहा हैं इस ऑफिस में बहोत सारे केबिन बने हुए हैं।

एक शादी का हॉल दिखाई दे रहा है।